कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं।

और पीछे दीवार बनी हुई है।

यहां कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है सामने एक लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ है और फोटो खिंचवा रहा है।

और यहां पर अलग अलग तरह के कपड़े हैं।

सीढ़ियों पर कुछ लोग खड़े हैं।

एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और यहां बिजली के तारे भी हैं।